यहाँ गाँछ वृक्ष है इसका --

इ एगो झंडा कोची के है ।

पेड़-पौधा सब हैइसमें रोड भी है ।

दू चार गो मिलतइ खाय ला |

आदमी वहाँ खरीदने गया है | ईटा का घर है कलम है ।

इ तो सैलून है | बाल सही करे वाला है ।

इसमें घुसेंगा तो ऊपर पूरा ही --

अरे ओ ग्यारह हज़ार लाइन है तैंतीस हज़ार लाइन है।

इसमें बैठ कर के आदमी सब भी जा सकता है सामान भी सब जा सकता है इसमें ।

चाय उ पीता है कॉफ़ी पीता है सब चीज दारूओ भी इसमें पी सकते है।